यह एक रूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारी लेडीज एक्सरसाइज कर रही हैं और अपने हाथों को ऊपर की हुई हैं।

एक बिल्डिंग का बाहर का दृश्य है।

और वह कान में मोबाइल लिया हुआ है।

तथा पिक और व्हाइट भी है एवं यहां पे बहुत सारे आदमी काम भी कर रहे हैं।

एवं यहां पे सीढ़ियों के ऊपर लाइन बाई लाइन फूलों का गमला रखा गया है।

तथा सभी के चेहरे पर ब्लर किया हुआ है एवं यहां पे बहुत सारे टाइल्से भी लगाई हुई है।

यह एक होटल का अंदर का दृश्य है।

तथा वह रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और यहां पे कुछ जेंस भी नजर आ रहे हैं जो की रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर स्कूल का रंग गाजरी कलर का है और व्हाइट कलर का है।

तथा नदी के किनारे बहुत सारे कचड़े एवं प्लास्टिक नजर आ रहे हैं।